टेबल पे खाना जमा हैं लाइटे लगी हैं उसपे बल्ब लगे हैं हरे पीली लाइटें लागी हैं पूरा अच्छा सा बना हुआ हैं चमक रहा हैं पूरा काउंटर इसका --

यहाँ पर सब्जियां बिक रही हैं इसमें बहोत सारी आलू ककड़ी टमाटर बैंगन यह सब बहोत सारी सब्जियां बिक रही हैं। कोई नीचे बैठकर बेच रहे हैं सब्जी।

यहाँ पर बहुत सारा तालाब टाइप का बना हुआ है बड़ा सा तालाब इसमें तालाब के अंदर नाव खड़ी है एक बड़ी सी नाव खड़ी है एक छोटी सी नाव खड़ी है इसमें--